मैं इमेज को देख रही हूं जिसमें रोड है।

ऑटो ब्लैक येलो कलर की है ऑटो का--

और यहां पे बहोत सारे लोग खड़े हैं।

पटेल अनाज भंडार लिखा है नीचे में थोक एवं चिल्लर के बिक्रेता उसमें लिखा है हमारे यहाँ तेल --

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें लिखा है बिंदिया साड़ी।

यहाँ पे ऊपर में सॉक्स भी टंगे हैं।

मैं एक इमेज को देख रही हूं मुझे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

लगा चेयर बना है और एक और बना लगा चेयर है राइट में बेसिन है और जो --

पेंटिंग जैसा बना हुआ है फ्लावर्स का।

प्लाट में एक ब्लू कलर का टेंट है।

बीच पंडाल जैसा बना है कलर कलर का--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

और येलो कलर का पीछे पट्टी जैसे है।

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें गमले हैं बहोत सारे गमले में प्लांट्स लगे हुए हैं।

और बहुत सारे बास्केट्स को देख रही हूं मैं--

देख रही हूं जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर के--

मिट्टी है और इसमें कुछ घास सूख गया है या येलो येलो कलर के हो गए हैं।

ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ ग्रास है।

एक कार नजर लग रही है एंड ऊपर में स्काई ब्लू है कलर की--

दो बच्चे हैं यहां पे चढ़े हुए हैं एक ने ब्लैक कलर के टी शर्ट एंड ग्रे कलर का शॉर्ट्स पहना हुआ है।

एक ने पर्पल कलर का शॉर्ट्स --

एक द्वार दिख रहा है बीच में जिसमें बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और--